यहाँ पे एक विद्यार्थी खड़ा हुआ है वो एक दीवाल में हिंदी में लिखा हुआ है एक कुछ चीज़े पढ़ रह है उसके साइड में एक--

ये एक घर की फोटो है जहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है और कुछ वर्ड दिया है हिन्दी में।

यहाँ पे एक आदमी है जो सर पे पगरी बांधा हुआ है यहाँ पे एक गेट ब्लू कलर का गेट है जिसके बाहर सब लोग खड़े है।

ये एक ऑफिस की फोटो है | यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तीन लोग बैठ के काम कर रहे हैं एक इंसान खड़े होके काम कर रहे हैं यहाँ एक घड़ी लगी हुई है।

ये एक कुंड की फोटो है | यहाँ पे कुंड के बाहर बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं | कुंड के साईड में बहुत सारी बाउंड्री लगाई गईं हैं।

के पीछे साइड में बहुत बड़ा जंगल है जहां बहुत हरे भड़े बहुत बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं।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

ये एक विद्यालय की फोटो है ऊपर विद्यालय का नाम लिखा हुआ है अ विद्यालय का गेट आधा खुला हुआ है यहाँ बहुत सारे बच्चे --

यहाँ पे एक तलाब है जहां पर बहोत सारा पानी भरा हुआ है तलाब में बहोत सारे छोटे-छोटे फूल उग रहे है तलाब के साइड में---